पर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कपड़े पड़े हुए हैं।

छोटी-मोटी घास-फूस भी जमी हुई है बिल्डिंग पर।

देखने मे काफी बढ़िया लग रहा है ये ग्राउंड ।

पीछे देखने पर एक टंकी बनाई गयी है जो --

यहां लेफ्ट साइड मे ग्रीन कलर का एक घर बना है जो की जहां पे --

और यहां पर चार लड़कियां ट्रेडीशनल कपड़े पहन कर डांस परफॉर्म कर रही है।

ये हाल व्हाइट कलर के थीम बेस बनाया गया है।

और थोड़ा दूर देखने पर बीच में पानी भरा हुआ है एक तालाब में।

फूलों के द्वारा और एक लड़का यहां से जाता हुआ नज़र आ रहा है।

और राइट साइड मे भी बहुत सारी ईंटा पड़ी हुई है।

इसके ऊपर चढ़ कर लोग इस पार से उस पार जा सकते है।

बीच में मैदान खाली है जिसमें घास उगी हुई है।